इमेज में एक मंदिर शो किया जा रहा है मंदिर काफी बड़ा हैं मंदिर के गुम्बद पर और भी मूर्तियों को बनाया गया है मंदिर के आजू-बाजु में झंडे लगे हुए है।

इमेज में एक अ बैंक का ए.टी.एम. दिखाई दे रहा है जो कि बंद है ए.टी.एम. के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है नीले और ग्रीन कलर का जिसमें ए.टी.एम. अ बैंक का नाम लिखा हुआ है।